इधर से जा रहे है और एक ट्रक और एक मारुती उधर से आ रहा है आस-पास कई सारे बिल्डिंगे भी है और बिजली का खम्भा भी --

और पर्दा है और ये एक एक हाथ से अपने पैर की उगलिया उठाकर पकड़ी है और एक हाथ आगे की तरफ की हुई --